वहां पर कुछ पेड़ हैं वहां पर एक एल_सी_डी है और--

खेना है तौलिया है वहां पर एक व्यक्ति है जो--

सामने एक जयमाला का मंडप है वहां पर एक कार है वहां पर फूल से सजाया गया है।